यखमा जी एक मंदिर छ यखमा जी कई सारी रंग-बिरंगी चित्र कलाकारी च करीं।

यख मा जी एक बाट्टू कर छ यख फणा कई सारा माकन भी छन यख फणी घास छ उगीं मैदान छ यख फण यख फणा बड़ा बड़ा ढालदा छन।

यखमा जी हरयूं-भरयुं मैदान च।